हर एक जगह के लिये ऑटो मिल जाता है। यहाँ ऑटो काफी बड़िया और अच्छे किफायती कम रेट में एक जगह से दुसरे जगह पोहचाता है जहां इधर आस-पास के कपार्टमेंट में बोहोत बड़िया और अच्छी सुविधा है।

हमारे बच्चो का ड्राइंग शीट वगेरा और विभिन्न कॉलेजो पर अच्छा किताब मिलता है और यहाँ एक सेल्समैन भी जो अच्छी छुट मिलता --

फूल का कार्नर है जो काफी बढ़िया और अच्छा फूल अम मिलता है यहां पर अम पूजा एवं शादी-विवाह में --

ऑफिस है। एएए एक कारखाना है जहाँ पर काम को स्टार्ट किया गया है। काम स्टार्ट करने के पहले यहाँ पर पूजा एवं अर्चना होवे जिसे एक अगरबत्ती भी जल रही जाए। कुछ मिठाईयां और एक दीपक भी जल रहा है जो काफी बढ़ियाँ और अच्छा होता है काम शुरू करने से पहले।

बढियां और आकर्षक दिख रहे हैं और यहाँ लोग दर्शन करने के लिये आये हुए हैं और यहाँ पर इस मंदिर को देख रेख करने के लिये चौबीस घंटे एक पुजारी उपल्ब्ध रह --